साइड में बहोत सारे पेड़ पौधे घांस और झाड़ियाँ --

यह एक सब्जी की शॉप जहाँ काउंटर पर बहुत सारी सब्जियां सजाई हुई है। जिनमें भिन्डी --

तथा साइड में एक व्यक्ति का पोस्टर लगा हुआ जिसने हॉफ टीशर्ट पहना हुआ --

काउंटर पर बहुत सारी फाइले व सामान रखे हुए हैं| सामने एक व्यक्ति खड़ा है।

इनमे फुटबॉल बैट शूज टीशर्ट स्पीकर बॉल कोल्डड्रिंक और अन्य प्रकार के सामान रखे हुए --